दोगो छोटे-छोटे पेड़ है लगे हुए है।

ये इसमें एक-दो लड़कियाँ मोबाइल लेकर खड़ी हुई है यहाँ पर हमलोगो को --

एक खंभा लगा हुआ है जिसमे सौलर पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा है ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

ऐ देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसमें दो गुम्मट बनी हुई हैं वाइट कलर की।

इस मे ब्लू कलर नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है । यहाँ पर एक नीले कलर का गेट दिखाई दे रहा है ।

हमलोग को सी.सी.टी.बी. कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर हम लोगों को पीछे के तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है दिखने में बहुत अच्छा स्कूल दिखाई दे रहा है |

ए क्रीम येलो कलर का पेंट किया गया है सभी भी बिल्डिंगो में यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है।

ब्यूटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है | देखने में बहुत अच्छी दुकान दिखाई दे रही है जिसमे तेल --

इसमें लड़का भी दिखाई देर रहा है एक लड़--